एक रास्ते पे बहुत सारे तार वुर है पूल है और घर भी तार भी है बाइक है टेम्पू है कार है घर है बाइक है।

पोखरी है पोखरी काफी खुबसुरत दो पोखरी है और खेत भी है पेड़-पौधे भी काफी खुबसुरत है और तार भी है और --

एक घर है| बहुत अच्छे घर है और घर पे आदमी भी है| घर कितनी खुबसुरत है और आसमान का कलर भी बहुत अच्छा है

देखने को मिलते है| घर की चारों तरफ एकदम राजमहल लग रही है।

और गार्डन में एक खेलने वाला भी और एक बेठने वाला भी लगा है पेड़ भी काफी खूबसूरत पेड़ है है|

और छोटा भी कप है दुकान में बहुत अच्छे से टांगा हुआ है कप ब्लैक वाईट और रेड कलर का क-कप है और छोटा भी कप है।

एक बहुत अच्छा टमाटर है इतना अच्छा रेड रेड ब रेड ब्लैक रेड वाइट का बहुत अच्छा टमाटर है एक टोकरी में रखा हुआ है।

तो बैंक ऑफ़ बड़ोदरा बैंक है| आधार कार्ड भी इससे बहुत लिखा है काउन्टर भी है।

एक मंदिर में एक दादी माँ जा रही है मंदिर काफी ख़ूबसूरत है और चारो ओर सजावट मंदिर की बहुत अच्छी है

एक गार्डनर है| कुर्सी और बेड है दिख रही है| तीन खुरी रेड और हरा पीला डाली हुई है| पेड़ हरा और और पीला है।

बैलून भी है इसमें बहुत शानदार लग रहा है सजावट बहुत-बहुत अच्छा है और बहुत ही शानदार सजावट किये है।

ये क्रिकेट खेलने वाला मैदान है और एक बल्लेबाज उतरे हुए हैं विकट भी है और बहुत सारे फील्डर भी हैं।

रोड बहुत अच्छा लग रहे है और रोड आदमी चल रहे है बहुत अच्छे रोड लग रहे है।

एक पहाड़ है| पहाड़ काफी खुबसुरत है| पहाड़ पर पेड़ पोधे और आदमी भी है और --